ये इस तस्वीर में एक नदिया दिखाई दे रहा है मुझे।

रोड का किनारे में बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है अलग अलग कलर पे।

लाइट बफ़ भी दिख रहा है।

और मुझे लाइट बल्फ दिखाई दे रहा है वाइट कलर पे।

तीन दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

टॉवर भी दिखाई दे रहा है घर का आगे में।

और सीलिंग में वाइट कलर लाइट भी दिखाई दे रहा है

और ये घर पे बहुत ज्यादा खिड़कियां दिखाई दे रहा है मुझे।

नाईट बल्ब भी दिखाई दे रहा है जलक--

मुझे दिखाई दे रहा है ये एक घास का स्टेप --

और मुझे यहां पे एक जनरेटर भी दिखाई दे रहा है।

ब्रिज का पीछे में एक दो घर भी दिखाई दे रहा है मुझे।

और दो गेट भी दिखाई दे रहा है मुझे।

कैमेरा भी दिखाई दे रहा है।

और शॉप का अंदर पे बहुत सारा लाइट भी दिखाई दे रहा है सेकंड कलर पे।